दुकान का कलर व्हाइट है इस दुकान में बोर्ड लगी हुई है।

इस घर में बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं।

बिल्डिंग के आगे पीछे बहुत सारे पेर नजर आ रहे हैं।

यह एक घर का दृश्य है इस घर में बहुत सारे कुर्सी लगे हुए हैं।

घर के में बहुत सारे खिनकी दिख रहे हैं और उसके ऊपर में एक मंदिर जैसा दिख रहे हैं।

ऊपर में ब्लैक पंखा नजर आ रहे हैं।

यह एक मंदिर का दृस्य है। यहां पे एक ब्लैक कलर का गाय और एक डॉग दिखा रहा है।

और एक व्यक्ति नजर आ रहे हैं।

ऊपर में बहुत सारे तार खींचे गए हैं।